ये एक पराठे का चित्र है और ये पराठा आलू का है और --

ये एक मॉल है जहां पे बच्चों के कपड़े मिलते हैं और उसी के जस्ट सामने एक आदमी स्कूटी चला रहा है और खंभे के पास--